ये है हिल स्टैशन का चित्र हैजिसमे पहाड़ बादल बहुती सुंदर नज़र आ रहे है और पिछे वाले पहाड़ों पर बरफ भी गिरी हुई है यहाँ--

यहां किसी का फंक्शन हो रहा है जिसमें सजावट देखकर मन बोहोत खुश हो रहा है सीधे हाथ पर बोहोत --

यह किसी कॉलेज का दृश्य है सीधे हाथ पर देखे तो कॉलेज की बिल्डिंग है जिसमें ए_सी लगे हुए हैं अगर आप सामने देख तो ये--

लंबा सा पंखा भी लगा रखा है एक कैमरा लगा हुआ है और चारों तरफ स्टार स्टार नाम के बैनर लटका रहा--

यह बहुत पुरानी पत्थरों से बनी हुई एक दरोहर है जिसके पीछे एक पार्क हैजिसमें--

इस दरवाजे के ऊपर एक घंटी बांध रखी है यहां अधिकतर लोगों ने लाल रंग के वस्त्र--

त्र पेहेन रखे हैं और एक व्यक्ति ने पीले रंग के वस्त्र यह एक मंदिर का दृ --

इस चित्र में एक प्रोग्राम का दृश्य देख सकते हैं यहां बहुत सारे फोटोग्राफर हैं जो फोटो खींच रहे हैं।

स्कूटी के पीछे बहोत सारे टूल्स टंगे हुए हैं और कुछ टूल्स स्कूटी के नीचे रखे हुए हैं स्कूटी के पीछे सीढ़ियां है सीढ़ीओ में टाइल्स लगी हुई--

यह एक सरकारी बिल्डिंग है इस बिल्डिंग का रंग नीला और हरा और सफेद है इस बिल्डिंग के सीधे हाथ--